और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहोत प्यारा लग रहा--

मुझे लगता है कि आज ये दूल्हा बहुत ज्यादा खुश होगा।

और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर होट लीवर --

इसका नाम हैं मनासा मिडवे फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल --

यह होटल स्वच्छ और साफ दिख रहा है।